इस बिल्डिंग के किनारे बगल में एक छोटा-सा घर है घर के बगल में एक राष्ट्र ध्वज है इस राष्ट्र के धव्ज के साइड में एक गैलन है।

यह एक छोटी बस है। इस बस में प्रॉफिट लिखा हुआ है। यह बस सफेद तथा गुलाबी रंग से रंगा हुआ है। यह बस रोड के किनारे खड़ी है।

यह कोई स्कूल है इस स्कूल के बरांडे में टेबुल लगी हुई है यहां बच्चे बैठ कर खड़े होकर ड्राइंग कर रहे हैं तथा टीचर उसे देख --

पुरानी मंदिर है। यह मंदिर सोने की कलर का है। यह बहुत ही आकर्षक है। यहाँ पर बहुत से आदमी घूमने आ --

यह घोड़े रथ को घोड़े खींच रहे हैं।